सफेद अक्षरो मे भारत लिखाई दे रहा है इसके हमे काले टायर दिखाई दे रहे है उसी के हमे परछाई भी दिखाई दे रही है आसपास हमे ए कुछ झाड़ू पोधे दिखाई दे रहे यहाँ पे हमे खुला आसमान भी दिखाई दे रहा बस मे खिड़किया दिखाई दे रही।

तस्वीर मे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमे एक बड़ी सी पत्थर दिखाई दे रहा हैंजिसके ऊपर हमे बहुत सारा कुछ मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं कुछ डिजिन बना दिख रहा हैं।

इस तस्वीर मे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमे एक ब्रिज दिखाई दे रहा हैं जिसके ऊपर हमे कुछ गाड़िया दिखाई दे रही हैं यहाँ पर हमे एक ब्राउन कलर का गमला दिखा दे रहा हैं नीचे पानी दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ कुछ लोग बईथे दिखाई दे रहे हैं खुला आसमान दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर हमे मंदिर का बड़ सा दरवाजा दिखाई दे रहा हैं जिसके आरपार हम देख सकते हैं यहाँ पे हमे कुछ और भी आँगन दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमे एक बिलडींग दिखाई दे रही हैं जिसके सामने हमे एक सड़क दिखाई दे रही हैं यहाँ पे हमे कुछ मिट्टी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे हमे घाँस टोकरी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे हमे मोटर साइकिल दिखाई दे रही हैं।

हरी-भरी घास दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी परछाई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर हमे लाइटों का रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है बेंच के उपर लोग बैठे दिखाई --

यहाँ पे बेंच में हमें कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे है यहाँ पे हमें कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है बिल्डिंग सफेद रंग की दिखाई दे रही है यहाँ के ऊपर में कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे है फैन दिखाई दे रहे है यहाँ पर --